यहाँ पे पूल भी दिखाई दे रहा है और नदी के उस पार में कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे है छोटे से समझ में नहीं आ रहे है ।

यहाँ सामने में कुछ रोड जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कछुआ दिखाई दे रहा है दो और यहाँ थोड़ा सा गड्ढा जैसा है उसमें पानी भी है।

और वो बहुत दूर से छे एक लम्बा टावर जैसा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है बड़ा सा --

यहाँ सामने में एक जेंट्स खड़े दिखाई दे रहे है और सामने में बहुत सारी लकड़ी --

और कुछ दीवाले भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे --

एक बड़ा सा अ अभी कुछ दिखा रहा है यहाँ हाथी दिख रहा है यहाँ पे भालू भी दिखाई दे रही एक घर है जो वाइट कलर का --

गोल्डन कलर में और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए है दिखाई दे रहे है जेंट्स लोग दिखाई दे रहे है और यहाँ पे ऊपर में जो ग्रीन कलर का भी --

यहाँ सामने में खाली जगह दिखा रहा है यहाँ पे कुछ मिट्टी भी दिखाई दे रहा है जो रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है और वाइट कलर का भी --

बना नहीं है ठीक से तैयारी हो रहा है यहाँ पे कुछ बिल्डर्स भी दिखाई दे रहे है साइड में और यहाँ पे एक और --

पेड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे साइड साइड में कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं थोड़ा-थोड़ा और यहाँ पे जो --

दीवाल भी दिखाई दे रहा है पि साइड में बॉउंड्री भी दिखाई दे रही है यहाँ पे --

यहां पर ये फ्लावर्स दिखाई दे रहा है जो बोया हुआ है लेकिन इसका फ्लावर्स सही है पीला और यहां ऑरेंज कलर में है।

साइड में भी एक लड़का दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो खड़ा दिखाई दे रहा है फैन लगा हुआ है ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे और --